ऐ बबल्स है। लग रहा है पानी में कोई नाह रहा है मशीन में पाने फुवारा दे रहे है बहोत कम नहार है कुछ लोग रहे है कुछ लोग खड़े है।

ऐसा प्रतीत हो रहा है की ये चार अ-- चार मंजिला बिल्डिंग है या किसी का होटल है जैसे लग रहा है प्रतीत हो रहा है।

और बादल सुबह का टाइम है बहोत ही अच्छे दिख रहे क्या ही बताए आपको इनता ही अच्छा--

ये एक पीछे साईड में पहाड़ है उसमे घास-फुस्स उगा है हरी-हरी और ये पेड़ है।

एक नदी है और डेल्डा बना हुआ है कुछ घास-फुस्स नदी के अंदर में उगे हुए है डेल्डा की से--

उधर पीछे पूरा मम-- घिरा हुआ है और नीला पानी लग रहा हैअच्छा है दिख रहा है सीन ।

और पानी अच्छा दिख रहा है पेड़ पौधे से पेड़ पौधे से जगह जा रहे है और पेड़ हिस में रहते है इनलोग।

और ऐसा प्रतीत हो रहा है की ये सेलून है या ब्यूटी पार्लर है।

जाक ह बताक के अओ मन उतरे हे मैदान म अपन घास खाए बा या चारा खोचेबा।